जहाँ पे दो लेडीज और एक जेंट्स काम कर रहा है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शोरूम है।

और बहुत बड़ा तालाब है।